बैंक ये करती है ऐसा कोई दिक्कत नही है ऐसा कुछ है हीं नहीं।

यहाँ पे हम लोग जाते हैं सभी काम अपना बैंक में बैंक का भी काम निपटाते हैं और शॉपिंग भी करना होता है तो शॉपिंग भी कर लेते हैं और साथ में समोसे और चाय खा लेते हैं।

ये तो सभी लोग देख हीं रहे हैं की जो बहुत अच्छे इस ये मोर पंख अपना पूरा फैलाई हुई है।

जो पचास रुपय में हाफ प्लेट और अढ़ाई सौ रूपय में दो प्लेट हो जाते हैं और उसमें घर पे जो आदमी चाहे तो और भी चावल --